बहोत सुन्दर लाइटों से सजाया हुआ है।

भी चल रहा है।

आसमानी कलर हुआ है।

वहाँ पे ईटों कि क्यारी बनाया हुआ है। बाल्टी रखा हुआ है।

की दुकान सजाया हुआ --

यहाँ-वहाँ व्हाइट कलर सी कुर्सी है।

आदमी हैं। बहोत सारे कुर्सियां --

नीचे ए टी एम है। ऊपर बेंचे हैं। भी लगा हुआ है।